यहां एक लाइब्रेरी है एक आदमी लाइब्रेरी में खड़ा है।

इस मैदान में बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

इसमें बहोत सारी घास है चारों तरफ हरियाली है नीम के पीपल के पेड़ हैं व बड़ी बड़ी घासें हैं।

उस पर बहुत सारे सैनिटाइजर रखे हैं।

यह हॉल काफी सुंदर सजावट की गई है।

यह मिट्टी का बड़ा सा ग्राउंड है इस ग्राउंड में एक झंडा भी लगा है।

यहां एक चिकित्सालय है जिसमें नेत्र वगैरा देखे जाते हैं।

यहां पर नीले रंग का कारपेट बिछा है और लाल रंग का भी यहां पीले रंग से बहोत सुंदर सजावट है।

यहां बहुत बड़ा मैदान है इस मैदान में एक घोड़ा दिखाई दे रहा है जिस पर एक आदमी भी बैठा है।